एक कार और एक मोटर दिखाई दे रही है बीच मे कुछ पानी दिखाई दे रहा है।

आप एक दीवार दिखाइ दे रहा है दीवार के ऊपर --

पीछे की तरफ कुछ कचरा गिर हुआ दिखाई दे रहा वहाँ पर कुछ पानी गिरा हुआ है।

वहा पर एक मशीन दिखाई दे रही है उसके साइड मे कुछ तारे लटकती नजर आ रही है ऊपर की तरफ एक लाइट दिखाई --

वहा पर बहुत सारे खम्बे दिखाई दे रहे है वहा ऊपर बहुत सारे एंगल लगे हुए नजर आ रही है उसके ऊपर कुछ पत्रे नजर आ रहे है वहा पर एक आदमी बेठे हुहे दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सारी कुर्सिया दिख रही है जहा पर कुछ झाडे नजर आ रही है आगे की तरफ बहुत सारे लाइट जलती हुही नजर आ रही --

वहा पर पर भी कुछ छोटे लाइट लगे हुए है वहा पर कुछ डेकोरेशन किया गया है वहा पर कुछ ऊपर की तरफ चार लाइट दिख रहा है।